रोड बा रोड के अगल बगल गाड़ी खड़ा बड़ी सं घर माकन लउकताटे रोड पर अउरी कुछ नइखे गाडी ऐसे ही रिक्सा खड़ा बान सन अगल बगल में गाडी अउरी कुल खड़ा बड़ी सं |